पहाड़ी काले ग्रे कलर की दिखाई दे रही है उसपे हरे कलर के पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे है पानी नज़र आ रहा है जो कि सफ़ेद कलर का है।